नीचे छोटे-छोटे पेड़ नजर आ रहे हैं।

सामने मै टेबल दिखाई दे रहा है टेबल के चारो तरफ --

यहा पर बहुत ही बड़े बड़े पेड़ है।

अंदर परवेश कर रहे हैं।

यहाँ एक छोर पर बहुत ही सारी गाड़ियां लगी हुई है।

कुछ लोग मछली खरीद रहे हैं यहाँ मछली केंगड़ा --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ --

यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर नृत्य कला का प्रदर्शन हो रहा है।

और बालों में कचरा है।

चकोर और त्रिकोण आकृति में है।

यहाँ पर दोपहर सुबह और रात का खाना मिलता है।

पीछे पीले रंग की दीवाल है।

यहाँ बाहर एक चौकीदार खड़ा है।

यह एक बहुत ही बड़ा चर्च है।

यहाँ केले के कुछ पत्ते पौधे लगे हुए हैं --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ --

यहाँ पर काफी सारी रेल गाड़ियां खड़ी हुई है।

जो बहुत ही सुंदर लग रहा है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ --

यहाँ पर चर्च के तीन दरवाजे हैं।

सड़क के एक किनारे पर बहुत ही सारे.

उसके बगल में हरे रंग का बोर्ड है.

यहा पर बहुत ही सुंदर सुंदर खिलोने और खेल मिल रहे है।

यहां एक भीड़ भाड़ वाली सड़क है।

सड़क पर बहुत ही ज्यादा संख्या में गाड़ी खड़ी हुई है.

यह एक बहुत ही पुराने खंडर की दीवारें हैं.

यहां पर कुछ गमलों में पौधे लटके हुए हैं.

बगीचे मे बहुत ही बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं.

समुद्र के बीच एक व्यक्ति बैठा है.

यह चकोर और त्रिकोण आकृति मै बना हुआ है।

यहां पर स्टेडियम में काफी लोग मनोरंजन कर रहे हैं.

यहां लाल पीले सफेद टीले रंग की बस है.

समुंदर के किनारों पर बहुत ही बड़ी बड़ी झाडिया उगी हुई है।

यहां दीवालों पे तस्वीरें लगी हुई हैं.

डिजाइन देके बहुत ही सुंदर तरीके से पौधों को लगाया और सिचाया गया है.

तथा यहां एक बस चलना शुरू हुई है.

यहां पे काफी सारा घास फूस उगा हुआ है यहां पर कुछ.

यहां दीवारों को गुबारों से सजाया हुआ है.

यहां पर कुछ कार्यक्रम चल रहा है.

यहां पर काफी सारे मेज और कुर्सियां हैं.

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां एक.

तथा रोड के किनारे बहुत ही सारी दुकानें हैं.